ये एक स्कुल की फोटो जै मा जी बहरम ग्राउन्ड दिखेणु ग्राउन्ड मा जी बड़ा बड़ा दूई तीन डालान खड़ा होयां।

स्कुल दुई मंजिल कू निस वाली मंजिल मा पीलू कलर ऐंच वाली मंजिल मा लाल कलर होयूं।

हम एक जंगल की फोटो करा दिखाईं जैम डाला यथे वथें बांगा तिबांगा होयां।

ई साईड भी हम तैं दुई चार डालान दिखेणा लग्यां मिट्टी मुट्टी सब साफ़ सुथरी एकदम।